इस दृश्य में जो दिखाया जा रहा है यह एक मॉल है।

जहा पे विभिन्न प्रकार की सामग्री रखी हुई है।

एक व्यक्ति है जो ऑरेंज टी शर्ट और ब्लू जींस पहने हुए टोपी लगाए हुए है।

इस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे एक भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।

ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे दो बस लगी हुई है येलो कलर की।

और जहां पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई--

यहां पे एक ग्राउंड है बहुत सारे पेड़ पौधे एक मस्त जनरेटर रखा हुआ है बड़ा सा।

एक व्यक्ति है जो रेट सर्ट और जींस पहने हुए बाहर आने का काम कर--

नीचे दीवाल में एच_एच_सी_एल लिखा हुआ है।

बहुत खिड़की है और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं बहुत सारे तार हैं।

ओए यहां पे एक बाटा का टैग लगा हुआ है।

और यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे चट्टानें हैं।

और यहां भिन्न प्रकार की लाइटें लगी हुई है जैसे व्हाइट लाइट ब्ल्यू लाइट पिंक लाइट ।

यहां पे एक बच्चेमहिला और एक व्यक्ति--

इस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है यह एक कोई पूजन हो रहा है जहा पे --

बगल में एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है जहां पे पानी भरा हुआ है।

इस दृश्य में जो दिखाया जा रहा है वह एक सोप है।

बहोत सारे व्यक्ती है जो भजन कीर्तन कर रहे --

फोटो खींचा गया है।

उपर बहोत सारी खिड़कियां हैंजो कि बाहर की ओर आती दिख रही है।

यहां कैमरे लगे हुए हैं लाइटें लगी हुई है।

बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

और यहां ऊपर बहुत सारी पोस्टर लगी हुई हैं जिसमें कांटेबली लिखा हुआ है ।

जिसके बगल से बहोत पानी बह रहा है।

इसमे रेड धब्बे है और लाइटें लगी हुई ब्लै--